एक्सरसाइज कर रहा है और एक लड़का जिम कर रहा है।

लोग भी खड़े हुए हैं फोटो क्लिक कर रहे हैं और एक--

और दो पत्थर नीचे रखे हुए हैं और मशीन भी और--

और यहां नाव भी है और यहां बहुत से लोग भी हैं।

ये एक चित्र है यहां पर बलूंस भी लगे हुए हैं वाइट और पर्पल और यहां स्लिपर्स भी पड़े हुए हैं और--

कच्चे घर बने हुए हैं और यहां बहुत सारे पेड़े लग रहे हैं और बाहर बाइक और--

लड़का बैठा हुआ है और साइड में--

यहां एक घर भी नजर आ रहा है और रोड पर से--

तीन लड़कियों जा रही है और एक पेड़ा भी नजर आ रहा है।

ये एक चीज है ये एक बहुत--

ये एक जीत रहे एक शॉप --

साइड में गमले भी रखे हुए हैं।

हुई हैं और साइड में तेल की कॅन भीं रखीं हुई हैं।

ये एक चित्र है यहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहां बहुत बड़े-बड़े पहाड़ी भी हैं।

अलमारी भी बनी हुई है यहां बहुत सारे कपड़े और--

ऑफिस भी है ये पिंक कलर का पुता हुआ है और यहां--

और नीचे हरा भरा घास भी लगा है हुआ है।

फूल भी लग रहे हैं और यहां गमले भी हैं और यहां हरे भरे पेड़ भी हैं।

यहां बहुत सारी सब्जी मिल रही है।

ये एक चित्र है यहाँ बहुत सारे पेड़ भी हैं और यहाँ हरे भरे घास भी लग रहा है और यहाँ --

एक कछुआ भी बना हुआ है।

ये एक जगह है यहां टमाटर मिर्ची प्याज--

यहां बहुत सारे लोग भी हैं यहां--

आ रहे हैं एक लड़का हाथी पे चड़ा है एक लड़का हाथी को न्हिला रहा है।

और नीचे ग्रीन कलर का बैनर बिछा हुआ है।

यहां कुछ लोग स्कूटी से जा रहे हैं और यहां पक्का रोड भी बना हुआ है ।

साइड में कार भी खड़ी हुई है और नीचे कच्ची जमीन भी--

गार्डन भी है और यहां हरी भरी घास पे लगी हुई है और एक--

ये एक चित्र है यहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड है यहां हरी भरी--

शॉप है यहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है।